यह एक मार्केट है उस मार्केट में एक रोड है जिस पे बहुत सारा कचरा डाला हुआ है और सवारी ऑटो पे खड़ा है। उस रोड के पास में ही एक बैंक भी बनी हुई हैं।

और दीवाल पे उसके नाम के बोर्ड लगे हुए हैं। नीचे टाइल्स की फ्लोरिंग लगी हुई है और एक पास में सोफा भी रखा हुआ है।

पास में कांच के दरवाजे बने हुए है। कुछ ऊपर डब्बे भी रखे हुए है। पीछे एक पर्सन और खड़ा हुआ है जो उसको फोटो देते हुए देख रहा है।

और आस-पास दीवाले बनी हुई हैं। कांच का पूरा दरवाजा बना हुआ हैं। सामने रोड बनी हुई हैं। उस कांच के अंदर से --